तुम्हे एक महिला नाचते हुए दिखाई गई है।

फोटो में राइट साइड एक लाल कलर का गेट है जिसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

फोटो किसी पेट्रोल पंप का दिखाया गया है।

लेफ्ट साइड ब्राउन रंग का सोफा है और राइट साइड नीले कलर की चेयर्स हैं।

चारों तरफ बहोत बड़े बड़े चट्टान और पत्थर हि दिख रहे हैं।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

सामने एक सफेद रंग का गाड़ी है जिसमें नीला कलर का साइरेंस लगा हुआ है।

सामने टेबल और चेयर्स रखे हुए है।

सामने की ओर तट पर बहुत से पेड़ पत्ते भी दिख रहे हैं और आसमान सफेद है और सफेद बादल छाया हुआ है।

राइट साइड एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर काला कलर का सिंटेक्स रखा हुआ है।

सामने की ओर एक हाफ वाल है जिसमें बहोत से फूल के चित्र बने हुए हैं।

आगे की ओर पहाड़ दिख रहा है और दिन का मौसम है नीला आसमान दिख रहा है।

फोटो में लेफ्ट से बहुत सी गाड़ियाँ पार्कड हैं और एक बस भी चला आ रहा है।

फोटो में सामने बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई हैं।

फोटो में किसी रिपेयरिंग शॉप को दिखाया गया है आगे की ओर एक रिक्शा पार्क है और दो लोग भी दिखाए हुए हैं।

लेफ्ट साइड दिख रहा है जिसमे बहोत से पेप्सी बॉटल रखे हुए है।

यहा पे सयद सॉकेट है और उसके नीचे एक लाल कलर का बोर्ड भी रखा हुआ है।

आसमान नीला है और साफा है आगे के बोट में चप्पू भी रखा गया है।

जीजेस क्रॉस बना हुआ है और चारों तरफ बहुत से हर भरे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

राइट साइड पैनल में आर एंड टी ग्रुप लिखा हुआ है उसके नीचे एक गौतम बुद्ध का वाइट कलर का स्टेचू भी है।

प्रो में किसी कमरे का व्यू दिखाया गया है।

इस व्यक्ति ने चप्पल पहना है और यह अपने हाथ से कुछ रंग रहा है।

राइट साइड सीढ़ी है और लेफ्ट साइड दरवाजा भी है।

सामने की ओर महिला दिखाई गई है जो की पानी डाल रही है।

यह महिला माथे पे कुछ बांधी हुई है और चेहरे पर मास्क पेहना है और नीला कलर का कपड़ा पेहना हुआ है।